यहां पर मुझे एक फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है नटराज फॉर्म एंड एंड फर्निशिंग ।

यहां पर बेड पैसों पर मिलते हैं जो घरों में बैठने के लिए काम आते हैं यहां पर खिड़कियां एवं दरवाजे भी है।

एक दीवार पर तस्वीर लगी हुई है जिसके ऊपर नाम है खिलजी यहां पर बिजली की व्यवस्थाएं है बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई है एक लोहे का स्तंभ भी नजर आ रहा है।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

यहां पर अच्छी सुविधा है साफ सफाई है और--

बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है यहां पर बत्तियां जगमगा रही है बहुत सारे लोग जनसंख्या में हैं।

घोर अंधेरा छाया हुआ है पेड़ पौधे हैं बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है।

ये वस्तुयें एवं बहुत ही अच्छी सौंदर्य दिखाई दे रही है यहां पर मुझे बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारा --

संतरे भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत अच्छी दृश्य है यहां पर कुछ व्यक्ति है जो एक साथ बैठे हैं गप्पे लड़ा रही है।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

कोई फुट की फुटवियर कंपनी या फिर कोई फुटकर व्यापार की दुकान है इसके बाहर स्कूटर मोटरसाइकिल एवं गाड़ियां भी खड़ी हुई है बहुत ही अच्छा घर है।

एवम दीवार के अच्छा पेंट किया हुआ है एक महिला और एक बच्चा दिखाई दे रहा है महिला ने साड़ी पहन रखी है।